बेड पर गद्दा डाला हुआ है वहा पर एक चद्दर पडी है आगे की तरफ एक पाइप दिख रहा है दीवारसे चिपक के वहा दो खिडकिया है।

यहा पर एक अ बडीसी इमारत दिख रही है जिसके ऊपर एक पानी की टाकी दिख रही है नीचे एक दुकान है वहा एक सिलेंडर दिख रहा है आगे की तरफ कुछ गोणीया दिख रही है वह पर एक काउंटर --

यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारा पानी दिखा रहा है जहा पर दो बच्चे खेलते नजर आ रहे है स्विमिंग पूल के साइड मैं एक घर दिख रहा है जहाँ लोग--